और यहां पर सभी ने जैकेट पहना हुआ है और सर पे टोपी बांधी हुई है और यहां पर देखो --

और इधर देखिये एक लड़की खड़ी हुई है और देखिए आसमान का रंग हल्का काला है नीला है और बेगनी है और घर भी देखिए मैरून रंग की टीने लगे हुए हैं।

और लाइट जल रही है और बेडशीट पूरी सफेद है और जो चद्दर है उस पे --

और इधर कि जो दीवार है वो सफेद रंग की है तो देखिये बहुत बड़ा सा यहां पे खाने वाला गाय है।

और यहां पर जो दीवार है वो काले रंग की दीवार है और यहां पर लिखा है ग्लेनमार्क और वो भी जाली पे लिख के --

के ऊपर बोर्ड पर लिखा हुआ है राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार --

कल्याण संस्थान और यहां पर देखिए बहुत सारे आदमी की झूठ लग जिसमें कुछ औरत है कुछ आदमी और सभी ने माक्स पहने हुए हैं।

सामने बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है और उसपे लिखा है आय एम एस कैड सेंटर --

और नीचे भी देखे काफी बोर्ड लगे हुए हैं जिसमें की इधर के बोर्ड पर लिखा हुआ एस आर एस ट्रैवल --

और यहा पर देखिये जो इस द्वारका रंग है वो मैहरून रंग और बीच बीच में देखिए --

को जाली बना रहा है और यहां पर देखिए बगल मोटरसाइकिल भी खड़ी है और यहां पे जो सामने जो घर है उसकी दीवार का रंग --

जो आला लगा हुआ है उसने आसमानी रंग का वस्त्र पहना हुआ जो कि यहां की दीवार है वह सफेद रंग की है और ऊपर लाइट भी लगी हुए --

खाने रखेगा उसमें से धार गिर रही है पानी की और जो की धार जो पानी का रंग है वह मट मैला है।

और यहां पर जो देख रहे हैं टाइल्स का दीवार बनाया गया है और जो नीचे रखा गया है उस पे मेज पे रखा गया है वो लकड़ी के --

और यहां पर जो मछली का रंग है वो सफेद रंग है और --

लाल और हरे में है और यहां पर जो देख रहे हो नीचे जो जमीन है वो --

और यहां पर देखिए लोहे की बहुत टीने की जैसे बिछाए गए हैं।

बहुत सारे खाने पीने के और भी सामान है काजू किसमिश ये सब रखा हुआ है और ऊपर बहुत सारी लाइट लगी हुई है।

ये सलोन है और यहां पर देखिए एक आदमी है जो की मास्क लगाया हुआ है और उन्हें गुलाबी टी शर्ट पहनी और जींस पहना हुआ और सर पे उन्होंने --

और यहां पर देखिए इधर कुछ छोटे-छोटे पेड़ भी दिख रहे हैं और बीच में देखे पत्थर गिरे हुए हैं और यहां का जो जमीन है वह मटमिला जैसा दिख रहा है और यह पर जो जमीन पर कुछ रंग फेके है जो की गुलाबी है नारंगी है.

और अगल-बगल में देखिए बस खड़ी हुई है जो कि उधर शीशे का रंग आसमानी है और नीचे भी सफेद है और इधर देखिए हरे और काले में है।

यहां पर बहुत सारे बस खड़ी हुई हैं और पीछे देखिए बहुत सारे घने बड़े-बड़े पेड़ हैं और आसमान का रंग देखिए।

ये बहुत बड़ा सा हॉल है और यहां पर बहुत सारे आदमी खड़े हैं और कुछ बैठे भी हैं और यहां पर जो एक औरत है उसने अपने हाथ में --

बीच में स्विमिंग पुल बनाएगा उसमें कुछ आदमी तैर रहे हैं और उधर देखिए बगल में भी पानी है और बीच में देखिए बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और पत्थर भी किनारे-किनारे लगे हुए हैं और उधर देखिए बहुत --

और आगे देखिए सफेद रंग का घर है जिसपे की काले रंग की पट्टी की गई है और उधर देखिए बहुत बड़ा सुंदर खंबा है।

और उधर देखिये बिजली की कुछ तारे से जा रही है और आसमान का रंग देखिए काला और थोड़ा --

टीने का छज्जा लगाया गया और उसमें देखिए लोहे भी लगे हुए हैं और जो कार है वो सफेद रंग की है।

इंडियन ऑयल यहां पर लिखा हुआ है और यहां पर देखिए यहां पर मोटरसाइकल खड़ी है यहां पर कुछ लोग भी खड़े हैं।

और यहां पर देखिए जो पिलर है उस पे भी कुछ बैनर जैसे लगे हुए हैं और ऊपर देखिए जो रंग है दीवार का वो ऊपर का सफेद है और इधर देखिए --

और आसमान का रंग हल्का हरा है और सफेद है और इधर देखिए अगल-बगल बहुत सारे गने पेड़ है।

सफेद है और यहां पर देखी मरून पट्टी दी गई है आगे देखिये नीली पट्टी दी गई है और बगल में पेड़ पौधे भी है।

और ऊपर देखिए आसमान का रंग नीला है।

और यहां पर देखिए सामने एक पर्दे सफेद रंग के भी लगे गए हैं और इधर देखिए अगल जो दीवाल है वो गुलाबी रंग की है और आसमान का रंग देखिए काला हैं।

कागज की पन्नी लगी हुई है और अगल बगल देखिए बहुत सारे इधर लोहे लगे उसमें भी इधर पन्नी लगी लग --

सामने मैदान है जिसमे हरे घास उगे हुए है और इधर देखिये जो कार्टून बिछा हुवा है वो मैरून रंग का और यहां पर देखिये --

बाजे रखे हुए है और ऊपर देखे आर्केस्टा लाइट लगायी गयी है और लोहे के पिलर जैसे लगाए गए है।

जाली है जो कि काले रंग की हैं और उधर भी देखिए कार खड़ी हुई है।

और आसमान का रंगी नीला है बेगनी है।

और सभी ने कॉपी बुक को खोला हुआ हैं।